हमे यहाँ एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसने सफ़ेद कलर की कमीज़ पहनी हुई है।

उसके बाहर एक लड़का बैठा है जो की चितकबरा कलर का शर्ट पहना है।

इसमें ट्रॉफी बहुत सारी दिखाई दे रही है।

जहां बहुत सारे कपड़ा का गट्ठा बना के एक के ऊपर एक छली जैसा रख दिया है।

जे वाले फोटो में हमको तालाब का घाट दिखाई पड़ रहा है।

और इ जो कसरत घर का जो फर्श हमको दिखाई पड़ रहा है।

ये फोटो एक मछली दुकान का नजर आ रहा है।

जो की लाइब्रेरी जैसी लग रही है।

इस फोटो में हमको एक नउआ का दुकान दिखाई दे रहा है जहाँ एक लड़का कुर्सी मे कपड़ा बांध के बाल कटवाता हुआ दिख रहा है |

ये फोटो में एक हॉल दिखाई पड़ रहा है।

ये फोटो में हमको खूब सारे बच्चे दिखाई पड़ रहे है।

इस के सामने हमें एक सीढ़ी दिखाई दे रही है जो की तीन-चार पायदान की है।

इस तस्वीर में हमें छ पुतला नजर आ रहे हैं।